उसके ऊपर लकड़े का कुछ सामान लगा रहे है एक सामान खड़ा है और एक सामान आ रहा है धन्यवाद।

फोटो में आसमान दिखाई दे रहा है। काफी सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं। काफी खुला खुली जगह दिखाई दे रही है काफी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

शोकेस में तीन दरवाजे हैं | तीनो दरवाजो के अंदर तीन भगवान की मूर्ति रखी गई है जो सीधी बैठी है।

मंदिर का वर्णन किया गया है जिसमें काफी सारे दीवार के ऊपर काफी सारे पुराण लिखे गए हैं धन्यवाद ।

फोटो में आसमान दिखाई दे रहा है सूरज दिखाई दे रहा है के नीचे काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उसके नीचे एक बड़ा सा समुंदर है समुंदर में काफी सारे पेड़-पोधो की परछाईं दिखाई दे रही है।

फोटो मे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है अ वो बिल्डिंग पूरी सफेद है उसके नीचे एक द्वार दिखाई दे रही है उ--

फोटो में एक कमरा दिखाई दे रहा है जो काफी बड़ा है काफी सारा सामान लगा-- रखा गया है काफी सारे कपडे है।

फोटो में आसमान दिखाई दे रहा है। जो पूरा काला है ये रात का समय है।

सीधा रास्ता दिखाई दे रहा है मंडप मैं जाने का और वो मंडप मैं जाने का रास्ता काफी आकर्षित है।

उसके ऊपर लाल कलर के कापडे कपडे से बाँधा गया है और गोल - गोल फूल की डिज़ाइन की हुई है और निचे एक दरवाजा है धन्यवाद्।

फोटो में आसमान दिखाई दे रहा है एक सफेद बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो काफी बड़ी है।

जो पूरी सफेद है उसे पे काफी सारी खिड़कियां है खिड़कियो पर नीले कलर हरे कलर के पर्दे लगे हुए है।